एक ऑफिस का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां एक पर्स भी रखा हुआ दिख रहा है।

यहां पे एक नीले रंग का ट्रक भी दिख रहा है।

यहां एक बहुत बड़ा इमारत बना हुआ है।

यहां एक लोहे की गेट और बहुत सारे हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारे रंग बिरंगे के लाइटें और एक हरा कारपेट बिछा हुआ है।

यहां हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इसमें नो पार्किंग लिखा हुआ है।

एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पानी बह रही है कुछ चट्टाने बिखरी हुई है।

यहां एक हरा पेड़ भी लगा हुआ है यहां लोहे की गेट लगी हुई है।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

यहां कुछ लकड़ी की कुर्सियां रखी हुई है।

एक नर्सरी का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ लोग भी हैं यहां हरे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

यहां एक ऑफिस बना हुआ है।

एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

एक गाड़ी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां वेलकम टू बैंक आफ इंडिया लिखा हुआ है ।

यहां सचिन होटल लिखा हुआ है यहां टीन का करकट भी है।

यह चारों ओर से लोहे की जाली से घेरा हुआ है।

और टाइल्स लगा हुआ है और काफी साफ सुथरा दिख रहा--

यह काफी साफ सुथरा है।

यहां दो लोग बैठे हुए हैं।

यहां एक गेट में ताला लगा हुआ है यहां एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है।